यहाँ पीछे कुछ चेयर्स लगी हुई है जो ब्लैक कलर कि है इसके अलवा हमे कुछ बिल्डिंग्स दिखाई गई है और हमें यहाँ पे स्काइ भी दिखाया गया है स्काई में हमे ब्लू --